यहां पे एक टेबल रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई है।

एक लोहे का फ्रेम दिखाई दे रहा है जीना दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

बिजली के कुछ खम्भे दिखाई दे रहे हैं।